ताकि विद्यार्थी यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकें --

मछवारे इन मछलियों को समुन्दर से पकड़ कर बाज़ार में बेचते हैं यह भारत के कई तहरों में खाई जाती है।

यह एक बहोत बड़ी शॉपिंग मॉल का पार्किंग एरिया है जहां पर बहोत सारी का --

यह एक पार्क की तस्वीर है जहां पर बहुत से पेड़ और पौधे उगाए गए हैं।